जैसा की इस दृश्य में हम देख पा रहे है यहाँ ये एक ईमारत दिख रही है यहाँ पर देखिये इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ दिखाई पड़ रही है यहाँ पर नीचे की तरफ बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है जिसमे की कुछ स्कूटी और कुछ बाइक है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे है ये एक दुकान है जिस पर की बुक स्टॉल का बैनर लगा हुआ है यहाँ पर देखिये काउंटर रखा हुआ है जिस पर की बहुत सारे पोस्टर्स चिपके हुए है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे है ये किसी मकान की स्लॅप पडती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिये सरिया का बहुत बड़ा सा जाल पड़ा हुआ है यहाँ पर कुछ सरिया खम्बो जैसी दिखाई पड़ी है यहाँ पर बहुत सारे मजदूर और मिस्त्री दिखाई पड़े --

जैसा की इस दृश्य में हम देख पा रहे है ये एक दुकान है जहाँ पर मछलियाँ बिक रही है यहाँ पर देखिये अलग अलग डिब्बो में बहुत तरह की मछलियाँ रखी हुई है कुछ मछलियाँ छोटी छोटी और कुछ मछलियाँ बड़ी है।